इसके अंदर तीन टेबल दिखाई दे रही है एक बंदा चेयर के ऊपर बैठा हुआ है सामने तीन व्हाइट टेबल दिख कुर्सी दिखाई दे रही है और हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

दो बंदे बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और एक ने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है दुकान के अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं।

एक बंदे ने ब्लू कलर की टोपी पहनी है दो वाइट कलर की बाल्टीयां रखी हुई है एक बाल्टी को हाथ में लेकर वो कुछ कुछ डाल रहा अंदर उस मशीन के अंदर --

सामने के बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीला आसमान दिखाई दे रहा है यहां तीन चार पेड़ खजूर के लगे हुए दिखाई दे रहे है हरी भरी घास दिखाई दे रही है।